मेरे प्यारे देशवासियो नमस्कार
मन की बात का ये 91वाँ एपिसोड है
हम लोगों ने पहले इतनी सारी बातें की हैं अलगअलग विषयों पर अपनी बात साझा की है लेकिन इस बार मन की बात बहुत खास है
इसका कारण है इस बार का स्वतंत्रता दिवस जब भारत अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करेगा
हम सभी बहुत अद्भुत और ऐतिहासिक पल के गवाह बनने जा रहे हैं
ईश्वर ने ये हमें बहुत बड़ा सौभाग्य दिया है
आप भी सोचिए अगर हम गुलामी के दौर में पैदा हुए होते तो इस दिन की कल्पना हमारे लिए कैसी होती गुलामी से मुक्ति की वो तड़प पराधीनता की बेड़ियों से आज़ादी की वो बेचैनी कितनी बड़ी रही होगी
वो दिन जब हम हर दिन लाखोंलाख देशवासियों को आज़ादी के लिए लड़ते जूझते बलिदान देते देख रहे होते
जब हम हर सुबह इस सपने के साथ जग रहे होते कि मेरा हिंदुस्तान कब आज़ाद होगा और हो सकता है हमारे जीवन में वो भी दिन आता जब वंदेमातरम और भारत माँ की जय बोलते हुए हम आने वाली पीढ़ियों के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते जवानी खपा देते
साथियो 31 जुलाई यानी आज ही के दिन हम सभी देशवासी शहीद उधम सिंह जी की शहादत को नमन करते हैं
मैं ऐसे अन्य सभी महान क्रांतिकारियों को अपनी विनम्र श्रद्दांजलि अर्पित करता हूँ जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया
साथियो मुझे ये देखकर बहुत ख़ुशी होती है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है
सभी क्षेत्रों और समाज के हर वर्ग के लोग इससे जुड़े अलगअलग कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं
ऐसा ही एक कार्यक्रम इस महीने की शुरुआत में मेघालय में हुआ
मेघालय के बहादुर योद्धा यू टिरोत सिंह जी की पुण्यतिथि पर लोगों ने उन्हें याद किया
टिरोत सिंह जी ने खासी हिल्स खासी हिल्स पर नियंत्रण करने और वहाँ की संस्कृति पर प्रहार करने की अंग्रेजों की साजिश का जमकर विरोध किया था
इस कार्यक्रम में बहुत सारे कलाकारों ने सुंदर प्रस्तुतियाँ दी
इतिहास को ज़िंदा कर दिया
इसमें एक कार्निवल का आयोजन भी किया गया जिसमें मेघालय की महान संस्कृति को बड़े ही खूबसूरत तरीके से दर्शाया गया
अब से कुछ हफ्ते पहले कर्नाटका में अमृता भारती कन्नडार्थी नाम का एक अनूठा अभियान भी चलाया गया
इसमें राज्य की 75 जगहों पर आज़ादी के अमृत महोत्सव से जुड़े बड़े भव्य कार्यक्रम आयोजित किये गए
इनमें कर्नाटका के महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के साथ ही स्थानीय साहित्यिक उपलब्धियों को भी सामने लाने की कोशिश की गई
साथियो इसी जुलाई में एक बहुत ही रोचक प्रयास हुआ है जिसका नाम है आज़ादी की रेलगाड़ी और रेलवे स्टेशन
इस प्रयास का लक्ष्य है कि लोग आज़ादी की लड़ाई में भारतीय रेल की भूमिका को जानें
देश में अनेक ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से जुड़े हैं
आप भी इन रेलवे स्टेशनों के बारे में जानकार हैरान होंगे
झारखंड के गोमो जंक्शन को अब आधिकारिक रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमो के नाम से जाना जाता है
जानते है क्यों दरअसल इसी स्टेशन पर कालका मेल में सवार होकर नेताजी सुभाष ब्रिटिश अफसरों को चकमा देने में सफल रहे थे
आप सभी ने लखनऊ के पास काकोरी रेलवे स्टेशन का नाम भी जरुर सुना होगा
इस स्टेशन के साथ राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान जैसे जांबांजों का नाम जुड़ा है
यहाँ ट्रेन से जा रहे अंग्रेजों के खजाने को लूटकर वीर क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को अपनी ताक़त का परिचय करा दिया था
आप जब कभी तमिलनाडु के लोगों से बात करेंगे तो आपको थुथुकुडी जिले के वान्ची मणियाच्ची जंक्शन के बारे में जानने को मिलेगा
ये स्टेशन तमिल स्वतंत्रता सेनानी वान्चीनाथन जी के नाम पर है
ये वही स्थान है जहाँ 25 साल के युवा वान्ची ने ब्रिटिश कलेक्टर को उसके किये की सजा दी थी
साथियो ये लिस्ट काफी लम्बी है
देशभर के 24 राज्यों में फैले ऐसे 75 रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है
इन 75 स्टेशनों को बहुत ही खूबसूरती से सजाया जा रहा है
इनमें कई तरह के कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है
आपको भी समय निकालकर अपने पास के ऐसे ऐतिहासिक स्टेशन पर जरुर जाना चाहिए
आपको स्वतंत्रता आंदोलन के ऐसे इतिहास के बारे में विस्तार से पता चलेगा जिनसे आप अनजान रहे हैं
मैं आसपास के स्कूल के विद्यार्थियों से आग्रह करूँगा टीचर्स से आग्रह करूँगा कि अपने स्कूल के छोटेछोटे बच्चों को ले करके जरुर स्टेशन पर जाएँ और पूरा घटनाक्रम उन बच्चों को सुनाएँ समझाएँ
मेरे प्यारे देशवासियो आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशियल मूवमेंट हर घर तिरंगा हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है
इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरुर फहराएं या उसे अपने घर पर लगायें
तिरंगा हमें जोड़ता है हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है
मेरा एक सुझाव ये भी है कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर्स में तिरंगा लगा सकते हैं
वैसे क्या आप जानते हैं 2 अगस्त का हमारे तिरंगे से एक विशेष संबंध भी है
इसी दिन पिंगली वेंकैया जी की जन्मजयंती होती है जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था
मैं उन्हें आदरपूर्वक श्रद्दांजलि अर्पित करता हूँ
अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात करते हुए मैं महान क्रांतिकारी मदम कामा को भी याद करूँगा
तिरंगे को आकार देने में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है
साथियो आज़ादी के अमृत महोत्सव में हो रहे इन सारे आयोजनों का सबसे बड़ा सन्देश यही है कि हम सभी देशवासी अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा से पालन करें
तभी हम उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा कर पायेंगे
उनके सपनों का भारत बना पाएंगे
इसीलिए हमारे अगले 25 साल का ये अमृतकाल हर देशवासी के लिए कर्तव्यकाल की तरह है
देश को आज़ाद कराने हमारे वीर सेनानी हमें ये जिम्मेदारी देकर गए हैं और हमें इसे पूरी तरह निभाना है
मेरे प्यारे देशवासियो कोरोना के खिलाफ हम देशवासियों की लड़ाई अब भी जारी है
पूरी दुनिया आज भी जूझ रही है
होलिस्टिक हेल्थकेयर में लोगों की बढ़ती रुचि ने इसमें सभी की बहुत मदद की है
हम सभी जानते हैं कि इसमें भारतीय पारम्परिक पद्धतियाँ कितनी उपयोगी हैं
कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आयुष ने तो वैश्विक स्तर पर अहम भूमिका निभाई है
दुनियाभर में आयुर्वेद और भारतीय औषधियों के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है
ये एक बड़ी वजह है कि आयुष एक्सपोर्ट्स में रेकॉर्ड तेजी आई है और ये भी बहुत सुखद है कि इस क्षेत्र में कई नए स्टार्टअप्स भी सामने आ रहे हैं
हाल ही में एक ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन सम्मित हुई थी
आप जानकर हैरान होंगे कि इसमें करीब दस हज़ार करोड़ रूपए के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स मिले हैं
एक और बड़ी अहम बात ये हुई है कि कोरोना काल में औषधीय पौधों पर रिसर्च में भी बहुत वृद्धि हुई है
इस बारे में बहुत सी रिसर्च स्टडीज पब्लिश हो रही हैं
निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत है
साथियो देश में विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधों और जड़ीबूटियों को लेकर एक और बेहतरीन प्रयास हुआ है
अभीअभी जुलाई महीने में इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम को लॉन्च किया गया
यह इस बात का भी उदाहरण है कि कैसे हम डिजिटल वर्ल्ड का इस्तेमाल अपनी जड़ों से जुड़ने में कर सकते हैं
इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम प्रिजर्व्ड प्लांट्स या प्लांट पार्ट्स की डिजिटल इमेजेस का एक रोचक संग्रह है जो कि वेब पर फ्रीली अवेलेबल है
इस वर्चुअल हर्बेरियम पर अभी लाख से अधिक स्पेसिमेंस और उनसे जुड़ी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है
वर्चुअल हर्बेरियम में भारत की बोटेनिकल डाइवर्सिटी की समृद्ध तस्वीर भी दिखाई देती है
मुझे विश्वास है इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम भारतीय वनस्पतियों पर रिसर्च के लिए एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स बनेगा
मेरे प्यारे देशवासियो मन की बात में हम हर बार देशवासियों की ऐसी सफलताओं की चर्चा करते हैं जो हमारे चेहरे पर मीठी मुस्कान बिखेर देती हैं
अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे तब तो आप इसे जरुर सोने पर सुहागा कहेंगे
हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं
शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है उनकी आय भी बढ़ा रही है
हरियाणा में यमुनानगर में एक मधुमक्खी पालक साथी रहते हैं सुभाष कंबोज जी
सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीक़े से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया
इसके बाद उन्होंने केवल छःह बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था
आज वो करीब दो हज़ार बॉक्सेस में मधुमक्खी पालन कर रहे हैं
उनका शहद कई राज्यों में सप्लाई होता है
जम्मू के पल्ली गाँव में विनोद कुमार जी भी डेढ़ हज़ार से ज्यादा कॉलोनियों में मधुमक्खी पालन कर रहे हैं
उन्होंने पिछले साल रानी मक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया है
इस काम से वो सालाना 15 से 20 लाख रूपए कमा रहे हैं
कर्नाटक के एक और किसान हैं मधुकेश्वर हेगड़े जी
मधुकेश्वर जी ने बताया कि उन्होंने भारत सरकार से 50 मधुमक्खी कॉलोनियों के लिए सबसिडी ली थी
आज उनके पास 800 से ज्यादा कॉलोनियां हैं और वो कई टन शहद बेचते हैं
उन्होंने अपने काम में इनोवेशन किया और वो जामुन शहद तुलसी शहद आंवला शहद जैसे वानस्पतिक शहद भी बना रहे हैं
मधुकेश्वर जी मधु उत्पादन में आपके इनोवेशन और सफलता आपके नाम को भी सार्थक करती है
साथियो आप सब जानते हैं कि शहद को हमारे पारंपरिक स्वास्थ्य विज्ञान में कितना महत्व दिया गया है
आयुर्वेद ग्रंथों में तो शहद को अमृत बताया गया है
शहद न केवल हमें स्वाद देता है बल्कि आरोग्य भी देता है
शहद उत्पादन में आज इतनी अधिक संभावनाएं हैं कि प्रोफेशनल पढ़ाई करने वाले युवा भी इसे अपना स्वरोजगार बना रहे हैं
ऐसे ही एक युवा हैं यूपी में गोरखपुर के निमित सिंह
निमित जी ने बीटेक किया है
उनके पिता भी डॉक्टर हैं लेकिन पढाई के बाद नौकरी की जगह निमित जी ने स्वरोजगार का फैसला लिया
उन्होंने शहद उत्पादन का काम शुरू किया
क्वालिटी चेक के लिए लखनऊ में अपनी एक लैब भी बनवाई
निमित जी अब शहद और बी वैक्स से अच्छी कमाई कर रहे हैं और अलगअलग राज्यों में जाकर किसानों को प्रशिक्षित भी कर रहे हैं
ऐसे युवाओं की मेहनत से ही आज देश इतना बड़ा शहद उत्पादक बन रहा है
आपको जानकार ख़ुशी होगी कि देश से शहद का निर्यात भी बढ़ गया है
देश ने नेशनल बीकीपिंग एंड होनी मिशन जैसे अभियान चलाए किसानों ने पूरा परिश्रम किया और हमारे शहद की मिठास दुनिया तक पहुँचने लगी
अभी इस क्षेत्र में और भी बड़ी संभावनाएं मौजूद हैं
मैं चाहूँगा कि हमारे युवा इन अवसरों से जुड़कर उनका लाभ लें और नई संभावनाओं को साकार करें
मेरे प्यारे देशवासियो मुझे हिमाचल प्रदेश से मन की बात के एक श्रोता श्रीमान आशीष बहल जी का एक पत्र मिला है आई उन्होंने अपने पत्र में चंबा के मिंजर मेले का जिक्र किया है आई दरअसल मिंजर मक्के के फूलों को कहते हैं आई जब मक्के में मिंजर आते हैं तो मिंजर मेला भी मनाया जाता है और इस मेले में देशभर के पर्यटक दूरदूर से हिस्सा लेने के लिए आते हैं
संयोग से मिंजर मेला इस समय चल भी रहा है आई आप अगर हिमाचल घूमने गए हुए हैं तो इस मेले को देखने चंबा जा सकते हैं आई चंबा तो इतना ख़ूबसूरत है कि यहाँ के लोकगीतों में बारबार कहा जाता है
चंबे इक दिन ओणा कने महीना रैणा
यानि जो लोग एक दिन के लिए चंबा आते हैं वे इसकी खूबसूरती देखकर महीने भर यहां रह जाते हैं आई
साथियो हमारे देश में मेलों का भी बड़ा सांस्कृतिक महत्व रहा है आई मेले जनमन दोनों को जोड़ते हैं आई हिमाचल में वर्षा के बाद जब खरीफ की फसलें पकती हैं तब सितम्बर में शिमला मंडी कुल्लू और सोलन में सैरी या सैर भी मनाया जाता है आई सितंबर में ही जागरा भी आने वाला है
जागरा के मेलों में महासू देवता का आह्वाहन करके बीसू गीत गाए जाते हैं
महासू देवता का ये जागर हिमाचल में शिमला किन्नौर और सिरमौर के साथसाथ उत्तराखंड में भी होता है
साथियो हमारे देश में अलग अलग राज्यों में आदिवासी समाज के भी कई पारंपरिक मेले होते हैं
इनमें से कुछ मेले आदिवासी संस्कृति से जुड़े हैं तो कुछ का आयोजन आदिवासी इतिहास और विरासत से जुड़ा है जैसे कि आपको अगर मौका मिले तो तेलंगाना के मेडारम का चार दिवसीय समक्कासरलम्मा जातरा मेला देखने जरुर जाईये
इस मेले को तेलंगाना का महाकुम्भ कहा जाता है
सरलम्मा जातरा मेला दो आदिवासी महिला नायिकाओं समक्का और सरलम्मा के सम्मान में मनाया जाता है
ये तेलंगाना ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश के कोया आदिवासी समुदाय के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है
आँध्रप्रदेश में मारीदम्मा का मेला भी आदिवासी समाज की मान्यताओं से जुड़ा बड़ा मेला है
मारीदम्मा मेला जयेष्ठ अमावस्या से आषाढ़ अमावस्या तक चलता है और यहाँ का आदिवासी समाज इसे शक्ति उपासना के साथ जोड़ता है
यहीं पूर्वी गोदावरी के पेद्धापुरम में मरिदम्मा मंदिर भी है
इसी तरह राजस्थान में गरासिया जनजाति के लोग वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को सियावा का मेला या मनखां रो मेला का आयोजन करते हैं
छत्तीसगढ़ में बस्तर के नारायणपुर का मावली मेला भी बहुत खास होता है
पास ही मध्य प्रदेश का भगोरिया मेला भी खूब प्रसिद्ध है
कहते हैं कि भगोरिया मेले की शुरूआत राजा भोज के समय में हुई है
तब भील राजा कासूमरा और बालून ने अपनीअपनी राजधानी में पहली बार ये आयोजन किए थे
तब से आज तक ये मेले उतने ही उत्साह से मनाये जा रहे हैं
इसी तरह गुजरात में तरणेतर और माधोपुर जैसे कई मेले बहुत मशहूर हैं
मेले अपने आप में हमारे समाज जीवन की ऊर्जा का बहुत बड़ा स्त्रोत होते हैं
आपके आसपास भी ऐसे ही कई मेले होते होंगे
आधुनिक समय में समाज की ये पुरानी कड़ियाँ एक भारतश्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं
हमारे युवाओं को इनसे जरुर जुड़ना चाहिए और आप जब भी ऐसे मेलों में जाएं वहां की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर करें
आप चाहें तो किसी खास हैशटैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं
इससे उन मेलों के बारे में दूसरे लोग भी जानेंगे
आप कल्चर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर भी तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं
अगले कुछ दिन में कल्चर मिनिस्ट्री एक कॉम्पिटिशन भी शुरू करने जा रही है जहाँ मेलों की सबसे अच्छी तस्वीरें भेजने वालों को इनाम भी दिया जाएगा तो फिर देर नहीं कीजिए मेलों में घूमियें उनकी तस्वीरें साझा करिए और हो सकता है आपको इसका ईनाम भी मिल जाए
मेरे प्यारे देशवासियो आपको ध्यान होगा मन की बात के एक एपिसोड में मैंने कहा था कि भारत के पास टॉयज़ एक्सपोर्ट्स में पावरहाउस बनने की पूरी क्षमता है
मैंने स्पोर्ट्स और गेम्स में भारत की समृद्ध विरासत की खासतौर पर चर्चा की थी
भारत के स्थानीय खिलौने परंपरा और प्रकृति दोनों के अनुरूप होते हैं इकोफ्रेंडली होते हैं
मैं आज आपके साथ भारतीय खिलौनों की सफलता को शेयर करना चाहता हूँ
हमारे यंगस्टर्स स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स के बूते हमारी तोय इंडस्ट्री ने जो कर दिखाया है जो सफलताएँ हासिल की हैं उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी
आज जब भारतीय खिलौनों की बात होती है तो हर तरफ वोकल फोर लोकल की ही गूंज सुनाई दे रही है
आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि भारत में अब विदेश से आने वाले खिलौनों की संख्या लगातार कम हो रही है
पहले जहाँ 3 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के खिलौने बाहर से आते थे वहीँ अब इनका आयात 70 प्रतिशत तक घट गया है और खुशी की बात ये कि इसी दौरान भारत ने दो हज़ार छःह सौ करोड़ रुपए से अधिक के खिलौनों को विदेशों में निर्यात किया है जबकि पहले 300400 करोड़ रुपए के खिलौने ही भारत से बाहर जाते थे और आप तो जानते ही हैं कि ये सब कोरोना काल में हुआ है
भारत के तोय सेक्टर ने खुद को ट्रांसफार्म करके दिखा दिया है
इंडियन मैन्यूफैक्चर्स अब इंडियन माइथोलॉजी हिस्टोरी और कल्चर पर आधारित खिलौने बना रहे हैं
देश में जगहजगह खिलौनों के जो क्लस्टर्स हैं खिलौने बनाने वाले जो छोटेछोटे उद्यमी हैं उन्हें इसका बहुत लाभ हो रहा है
इन छोटे उद्यमियों के बनाए खिलौने अब दुनियाभर में जा रहे हैं
भारत के खिलौना निर्माता विश्व के प्रमुख ग्लोबल तोय ब्रांड्स के साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं
मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगा कि हमारा स्टार्टअप सेक्टर भी खिलौनों की दुनिया पर पूरा ध्यान दे रहा है
वे इस क्षेत्र में कई मजेदार चीजें भी कर रहे हैं
बेंगलुरु में शम्मे शूमी टॉयज़ नाम का स्टार्टअप इकोफ्रेंडली खिलौनों पर फोकस कर रहा है
गुजरात में अर्किड्जू आर्किड्जू कंपनी अर्बेस्ड फ्लैश कार्ड्स और अर्बेस्ड स्टोरीबुक्स बना रही हैं
पुणे की कंपनी फनवेंशन फन्वेंशन लर्निंग खिलौने और एक्टिविटी पजल्स पजल्स के जरिये साइंस टेक्नोलॉजी और मैथ्स में बच्चों की दिलचस्पी बढ़ाने में जुटी है
मैं खिलौनों की दुनिया में शानदार काम कर रहे ऐसे सभी मैन्यूफैक्चर्स को स्टार्टअप्स को बहुतबहुत बधाई देता हूँ
आईये हम सब मिलकर भारतीय खिलौनों को दुनियाभर में और अधिक लोकप्रिय बनायें
इसके साथ ही मैं अभिभावकों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि वे अधिक से अधिक भारतीय खिलौने पजल्स और गेम्स खरीदें
साथियो क्लासरूम हो या खेल का मैदान आज हमारे युवा हर क्षेत्र में देश को गौरवान्वित कर रहे हैं
इसी महीने पीवी सिंधू ने सिंगापुर ओपन का अपना पहला ख़िताब जीता है
नीरज चोपरा ने भी अपने बेहतरीन प्रदर्शन को जारी रखते हुए वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में देश के लिए सिल्वर मेडल जीता है
आयरलैंड पारा बैडमिंटन इंटरनेशनल में भी हमारे खिलाड़ियों ने 11 पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है
रोम में हुए वर्ल्ड कैडेट रेस्टलिंग चैम्पियनशिप में भी भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया
हमारे एथलीट सूरज ने तो ग्रेकोरोमैन इवेंट में कमाल ही कर दिया
उन्होंने 32 साल के लंबे अंतराल के बाद इस इवेंट में रेस्टलिंग का गोल्ड मेडल जीता है
खिलाड़ियों के लिए तो ये पूरा महीना ही एक्शन से भरपूर रहा है
चेन्नई में 44वें चेस ओलम्पियाड की मेजबानी करना भी भारत के लिए बड़े ही सम्मान की बात है
28 जुलाई को ही इस टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ है और मुझे इसकी ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होने का सौभाग्य मिला
उसी दिन उक में कॉमनवेल्थ गेम्स की भी शुरुआत हुई
युवा जोश से भरा भारतीय दल वहाँ देश को रिप्रेजेंट कर रहा है
मैं सभी खिलाड़ियों और एथलीट्स को देशवासियों की ओर से शुभकामनाएँ देता हूँ
मुझे इस बात की भी खुशी है कि भारत फिफा अंडर 17 womenएस वर्ल्ड कप उसकी भी मेजबानी करने जा रहा है
यह टूर्नामेंट अक्तूबर के आसपास होगा जो खेलों के प्रति देश की बेटियों का उत्साह बढ़ाएगा
साथियो कुछ दिन पहले ही देशभर में 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम भी घोषित हुए हैं
मैं उन सभी स्टूडेंट्स को बधाई देता हूँ जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम और लगन से सफलता अर्जित की है
महामारी के चलते पिछले दो साल बेहद चुनौतीपूर्ण रहे हैं
इन परिस्थितियों में भी हमारे युवाओं ने जिस साहस और संयम का परिचय दिया वह अत्यंत सराहनीय है
मैं सभी के सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ
मेरे प्यारे देशवासियो आज हमने आजादी के 75 साल पर देश की यात्रा के साथ अपनी चर्चा शुरू की थी
अगली बार जब हम मिलेंगे तब हमारे अगले 25 साल की यात्रा भी शुरू हो चुकी होगी
अपने घर और अपनों के घर पर हमारा प्यारा तिरंगा फहरे इसके लिए हम सबको जुटना है
आपने इस बार स्वतंत्रता दिवस को कैसे मनाया क्या कुछ खास किया ये भी मुझसे जरुर साझा करिएगा
अगली बार हम अपने इस अमृतपर्व के अलगअलग रंगों पर फिर से बात करेंगे तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए
बहुतबहुत धन्यवाद